वहां कुछ चट्टानें हैं कुछ पत्थर हैं एक लकड़ी अलग से लगी हुई है सामने कुछ पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे हैं और चट्टानों के बीच में कुछ घास उगी हुई है और कुछ पेड़ उगे हुए हैं।

और सभी ने ज्यादातर हेलमेट लगाया हुआ है हेलमेट का कलर कुछ हरा है कुछ पीला है कुछ कत्थई है और ऊपर की तरफ लाइटें लगी हैं काफी सारी और काफी सारी लोहे के पाइप लगे हुए --

यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पास तराजू रखा है साइड मे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अन्दर बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियां और बड़ी-बड़ी मछलियां भी है थोड़ी बहुत

यहाँ एक दीवार बनी हुई है जिस पे कुछ केले वगैरा नज़र आ रहे हैं नीचे काफी सारी डलिया हैं बहोत सारी औरते हैं यहाँ पर और डलियाओं में काफी सारे फ्रूट वगैरा रखे हुए हैं।